भगवान् के बड़का गो मंदिर हउ ऊपर में पूरा टाइल्स जैसा लगावल हउ निचहूँ में हउ।

मुंदील हाउ गेट हाउ दू -दू गो पिलर साइड में खड़ा हाउ।

पीछे में एगो घर हैय रोड जइसन हैय आयारी में दुगो दू दूगो मूर्ति है साइड में नीचा में पूरा गोल हैय फिर रंगल हैय साइड में आदमी खरा है ऊपर में|

लगावल हरियर कलर से रंगल हउ। ए_सी लगावल हउ होने पोस्टर हउ दू-दू गो | आरी-आरी रोड से घेरल हउ पूरा साइड में पूरा ।

वार्क मैडल कुछ है लिखा इधर पूरा रोड है पूरा हाईवे है उधर बाइक लगा हुआ है।

नारियल के पेड़ हाउ दू चार छव गो आदमी ऊपर हाउ व्यायाम करत लइका सब हाउ खेलईत हाउ

अमर जवान है उधर भीड़ है तीन किस्म का झंडा है आदमी का पूरा भीड़ लगा हुआ है साइड में लाइट है इधर उधर फुल ऐसा है पेड़ है पूरा बैलून है।

जिराफ के सिंह हो लमहर-लमहर बहुत ले पेड़ हउ साथ-साथ वो जिराफ हउ खड़ा पूरा बड़काऊ--